इसमें ग्रीन ग्रीन कलर की मतलब क काई भी जब गई है कलर भी है। मिट्टी --

ये राशन की दुकान है इसमें ये इसमें सरफ मैगी ओ मसाले मैगी मसाला चिकन मसाला --

और ये शकरकंजी है रतालू और ये मशरूम आलू प्याज टमाटर बैंगन --

ये क्लास चल रही है। ये बच्चे अपनी पढ़ाई कम्पलिट करने के लिए एक बैच चला रहे हैं। बैच बैच मे कोचिंग पढ रहे हैं।

और ये इधर टावर लगा हुआ है ये एंटीना लगा है ये और यह खंबा लगा हुआ है इधर टैंकर भी खड़े हैं यें पेट्रोल वाले टैंकर है डीजल वाले जो दूध की फैक्ट्री जैसी दि--